यहां पर बहुत ही अच्छी प्रकाश से खींची गई तस्वीर है मुझे यहां पर एक फुटकर व्यापार की दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक नाम भी है श्री नर्सिंग मोबाइल्स ।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

मुझे चारों ओर बत्तियां जगमगा रही है रंग बिरंगी बत्तियां जगमगाने को देखने को मिल रही है सफेद एवं लाल बत्तीया है।

इस तस्वीर में अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है यहां पर बहुत ही अच्छी प्रकार से लगी हुई तस्वीरें हैं यहां पे एक सफेद कलर किया वॉकर है।

बहुत ही अच्छी प्रकार से ली गई तस्वीर है यहां पर मुझे एक--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

बहोत ही अच्छी प्रकार से ली गई है दो व्यक्ति खड़ी हुई है बाहर स्कूटीयां लगी हुई है एक सफेद रंग की स्कूटी है दुकान पर नाम भी है।

छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं आसपास में बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे है मंदिर भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में भी आसपास में कुछ फुटकर व्यापार की दुकान है इसके आसपास में बहुत सारा सामान लगा हुआ है।